दुकान के अंदर बहुत सारी लाइटें जली हुई है एक आदमी खड़ा है।

पर सब बंद है आरी धारी के शोरूम के पास में लोग भी हैं।

यह एक साफ सुथरी जगह बनी हुई है यहां पे सब कुछ लकड़ी का है एक काउंटर है उसके ऊपर पेंटिंगे है।

बहोत अच्छी और बहोत सुंदर है ये सब पुराने जमाने का है सब कुछ साफ सुथरा है।

यह दो मंजिल की बिल्डिंग बन रही है।

एक गाड़ी खड़ी है सफेद रंग की।

यह एक धर्मशाला है यहां पर कुछ खाट पड़ी है सब पे सफेद चद्दर बिछी है।

तीन लाइटे नहीं जली हुई है अंधेरा हो रहा है।

येह एक गांव का एरिया है यहां पर सुखी मिटटी है बीच में एक पक्की सड़क है बाकी सब कच्चा है।

यह एक अमूल की डेयरी है अमूल की डेयरी के बाहर पिज़्ज़ा का बोर्ड है और सात बाइक खड़ी है।

और अमूल की डेयरी का इनॉग्रेशन हो रहा है इसलिए इसका डेकोरेशन हुआ हुआ है।

और एक आदमी ने पर्पल शर्ट पहनी है।

यहां एक औरत जा रही है जिसने ऑरेंज साड़ी पहनी है।